इस तस्वीर मे मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।

यहां मुझे दो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे एक बोड दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे कुछ कंबल दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है।

में मुझे एक बाइक दिखाई दे रही है।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

वीर में मुझे कुछ टेबल दिखाई दे रही हैं।

तस्वीर में मुझे दो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।